इस तस्वीर में हमे एक मॉल दिखाई दे रहा है।

हरी घास दिखाई दे रही है बादल दिखाई दे रहे है।

जिसमे कांच की खिड़किया लगी हुई है। शटर दिखाई दे रही है स्कूटर दिखाई दे रहे है।

आसमान दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहा है बोट दिखाई दे रहा है।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है लाइट का खम्भा दिखाई दे रहा है हरे पत्ते दिखाई दे रहे है ज़मीन दिखाई दे रही है।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

उसमे बोर्ड लगा हुआ है उसमे नाम लिखा है सरस्वती बुक डिपो --

इस तस्वीर में हमें दो बड़े घर दिखाई दे रहे है लाइट्स से घर को सजा रखा है।

मेला दिख रहा है खम्बे दिख रहे है झूले दिख रहे है बड़े-बड़े--